एक डरावा रखा हुआ है उसमें ख़ून से लटपट थोड़ा पानी भरा हुआ है

यह खंभा दिखाई दे रहा है जिसपे लाइटे --

मुझे यहा पर दो बिल्डिंग दिखाई दे रहे है एक बिल्डिंग में बहुत सारे लाइट दिखाई दे रहे है निचे दो शॉप है।

पे एक नीले कलर का बोर्ड उसके उपर स.बी.आई लिखा हुआ है।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

मुझे यहापर कुछ चीज़े दिखाई दे रही है जिसमे कुछ मीट मसाला है कुछ फिश मसाला है।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

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है कुछ बच्चे झूलो मैं झूल रहे है कुछ--

मुझे यहाँ पर एक डी.जे. गाड़ी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर पांच स्पीकर लगे हुए हैं दस डी.जे. लाइट दिखे दी है।

मुझे सामने एक गेट दिखाई दे रहा है जिसका ऊपर एल.सी.सी लाखोटिया कंप्यूटर सेनटर सेक्शन लिखा हुआ है।